छोटे-छोटे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं जोकि दिखने में बहोत ही ज्यादा अच्छे लगाए लग रहे हैं।

यहा पर एक बहुत सुन्दर और बहोत बड़ा घर बना हुवा है घर का जो कलर कोम्बिनेसन है वो बहोत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है।

यहा पर कुछ बच्चे बेठे हुवे है। जमीन पर उनकी मैडम खडी हुई है। उनकी मेम का साडी का कलर गुलाबी और सफ़ेद है वह फेस पेर मास्क भी लगाए है।

यहा पर फुल की दुकाने बनी हुई है जहा पर चारो तरफ फुल ही फुल रखे हुवे है कुछ बोरियो के अन्दर कुछ बोरियो में रखे हुए है।

बहुत से लोग यल्लो कलर की केप लगा कर अपना काम कर रहे है और यहाँ पर लोहे की छडे भी डाली हुयी है और उनसे पिअर भी बने हुए है।